इस चित्र में जो है एक डैम की तस्वीर है जहाँ पे बहुत सारा पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है डैम का रंग जो हैं काला है। ]

पीछे की तरफ बड़ी-बड़ी झाड़ियां है और बीच में एक ल लड़की को लगाया गया है ऊपर की तरफ खुला आसमान हैं ।

इस चित्र में जो है एक बड़े से मैदान के तस्वीर है जहा पे बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं ये मिट्टी का मैदान है पीछे --